किट है जिसमें अपर एक बैनर है जिस पर कुमार ने लिखा है कुछ लोग है जो की कुछ लड़कियाँ हैं कुछ ढोल लोग ढोल के लिए हुए हैं।

और पीछे एक चारों तरफ से एक दीवाल है जिसमे अ लोहे की रेलिंग लगी हुई है चारों तरफ से।